और पीछे की तरफ हमे कुछ बिल्डिंग्स देखने को मिल रही है ऐसा जैसा स्कूल की बिल्डिंग्स हो।

हम एक टाइल्स से बने हुए रास्ते को देख रहे है जो की सीधा सामने की तरफ जा रहा है साइडों में लगी हुई है कुछ पौधे जो की बिलकुल सीधे-सीधे लगा रखी हैं। उस रास्ते के साथ-साथ में बोर्डर का काम कर रहे हैं।

--देख पा रहे है फर्श पे खड़ी हुई है एक ब्रैन्ड न्यू बाइक जो की काफी चमक रही है काफी अच्छी लग रही है देखने मे बड़ी महेंगी गाड़ी है।

पर फा थोड़ी जमीन से उठा हुआ है। कुछ शोरूम जैसा देखने को मिल रहा है और हमें कुछ कार और बाइक भी और मिल रहीं हैं।

हम देख पा रहे हैं एक रास्ते को जहाँ पर जा रहे है बहुत सारी बकरियाँ जानवर और वहाँ पर हमें कुछ बहुत सी ईंट पत्थर की मकान जैसे देखने को मिल रहे है एक साइड बिल्कुल पैंट-लेस मकान है लेकिन ईंटों से अच्छा लग बना हुआ है।

हम देख पा रहे है बिल्डिंग को जहां पर ल खड़ी है कुछ बाइके और एंट्री गेट है ब्लैक कलर का जाली वाला जहां पर अंदर की तरफ जाते हुए हमे कुछ बच्चे दिखाई दे रहे है।

साम बाहर की तरफ आते हुए हमें एक आदमी भी दिखाई दे रहा है जिसने गेट को पकड़ा हुआ है और एक बिजली का तार आसमान में लटकता हुआ दिख रहा है और पूरा खुला आसमान --